ये है एक प्रकार का स्टेडियम जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और इसमें अच्छी हरी दूभ लगी हुई है।

शब्द लिखे हुए हैं और इसके आगे एक टेबल रखी हुई है दो कुर्सियां रख रखी है एक कांच के कम्प रखें हुए हैं।

और स्विच लगा हुआ है फोन चार्ज करने के लिए।

यह एक किराना स्टोर जिसमें सभी प्रकार के परचून का सामान मिलता है जैसे भुजिया बिस्किट है।

खेल रही है ये खेल है खो खो जिसमें कुछ महिलाएं बैठी है और कुछ भाग रही है।

इसमें बहुत ही अच्छी कटिंग की जाती है ये बंद है।

इसमें सर्विस कि जाती हैं गाड़ियों कि यहाँ पर सभी प्रकार के ग्रीस के डब्बे उबल्ब्ध पड़े हैं।

और इसके बीच में एक बहुत सारा पोल है उसके ऊपर बहुत सारी संख्या में लाइट लगी हुई है इसके पीछे पेड़ पौधे हैं चारों --

यह है एक कपड़ा की दुकान जिसमें--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

हैं यहां पर एक कुत्ता भी है और स सभी प्रकार के लमसम टे टेडी बेयर उपलब्ध हैं यहां पर।

ये हैं बहुत ही अच्छे प्रकार के पौधे जिसमें सभी प्रकार के यहां पर पौधे --

और इसकी पेंट अच्छी की हुई है बाहर से इसके ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है इसका नाम है अटल सेवा केंद्र।

सुंदर है इसके दुधारू भैंस है ये नस्ल है ये अपना चारा खा रही है।

जिसकी छाया बहुत ही सुंदर है इस गहरी छाया में एक --

पिंपल का पेड़ है जिसके बाहर एक गट्टा बनाया हुआ है और छोटे छोटे और सभी सामान है।

और एक मिंदर भी है छोटा सा इस प्रकार से कुछ समान है इसमें।